जैसे की मैं यहां देख पा रही हूं यह लकड़ी के लकड़ी से बने हुए कुछ समान मुझे दिख रहे हैं जैसे की टोपनी--

मुझे लगता है कि यहां पे मॉल भी वह है हो सकता है।

ब्रिज हमारे को रोड पार करने में सहायता करेंगे।

जो हमारे दिनचर में रोज के काम में--

और यहां पे मरीजों का इलाज किया जाता है।

और यहां पे बहुत सारे लोग भी मुझे नजर आ रहे

जैसे कि मुझे नजर आ रहा है ये डाक्टरों का शिविर लगा हुआ हैं।

जहां पे हम अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं जैसे की--

किसी को अगर स्किन त्वचा में कोईछ प्रॉब्लम है तो वो भी हम दिखा सकते हैं।

यह तो हमारे रायपुर का एम_डी है पुराना एम_डी के पुराना एम_डी ऐसे ही था हमारा।

मैं देख पा रही हूं यह डांस क्लास है जहां पे बच्चे प्रेक्टिस कर रहे हैं।

लोग यहां पे बहोत सारे नजर आ रहे हैं यह बहोत ही सुंदर और--

यहां की स्टडी बहोत अच्छी है और--

जो कि हमारे एरिया से पांच किलोमीटर की दूरी पे--

यह मुझे थर्टी सिक्स मॉल का नजर लग रहा है जो कि हमारे रायपुर पे है और मैग्नेटो मॉल के अपोजिट पे है।